बहुत से बच्चे दिख रहे आस पास पेड़ दिख रहे है दो लड्कीया दिखरही खड़ी हुई बाकी बैठे हुए दिख रहे है अह पन्नियों मे कुछ कपड़े दिख रहे है पोस्टर लगा हुआ है फ़ाउंडेशन लिखा हुआ है चाइल्ड एजुकेशन लिखा हुआ है।

कई की पूजा दिख रही लेडिज नीचे बैठी हुई हैं कुछ लड्कीया खड़ी हुईं हैं आसपास खेत दिख रहे हैं किसान दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा हैं बहुत दूर पेड़ दिख रहे हैं। गन्ने की--

बंधन बैंक लिखा हुआ दिख रहा है पोस्टर पे कुछ और दिख रहे बिल्डिंग दिख रही है तारे दिख रहे है।

पेड़ दिख रहे आसमान दिखर रहा है नीचे ग्राउंड दिख रही है चप्पल दिख रही है एक बच्चा ऊपर दिख रहा है।